और उस ठेले के ऊपर काफी सारे फल रखे हैं मोसंबी अनार केला ये सारे फल रखे हुए हैं।

एक ए_टी_एम है और ए_टी_एम खाली पड़ा हुआ है दो-तीन लोग बस खड़े हुए है बाहर जो है एको लाइन में नहीं है बाकि जो ए_टी_एम है हरा और सफ़ेद है और--

एक बैंक का ए.टी.एम. है और बैंक के ऐ.टी.एम. में जैसे बाहर लोग कुछ खड़े हुए हैं और अंदर लोग हैं।

इसमें देखिए कितने लोग हैं और ये सब जो है झूला झूलते हुए दिखाई दे रहे है कोई पार्क है जैसे पार्क में होते है सब लोग।

प्राइवेट बस में मुझे लग रहा है ऊपर आसमान भी देख सकते है हरा है नीला है और बाकी भी आपको देखने को मिले ये काफी अच्छा है।

और ये जो है फोटो जो है वो काफी नैचुरली काफी सूंदर दिखाई दे रही है क्योंकी इसमें ग्रेनवी काफी सॉलिड है।

दो-दो आदमी है उसमें एक आदमी जो है उसने पैंट लगा रखा है कुछ बैग टाइप का रखा हुआ है वो भी आप देख --

जैसे हम देख सकते हो की ये जो है मैदान है मैदान जो है मैदान में है काफी कुछ है और जो जो है बाकि जो आप देख ही सकते है कितना है।